एक्सकलेटर दिख रहे हैं लाइटें लगी हुई हैं।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

आसमान में बादल हैं तालाब दिख रहा है।

एक दुकान दिख रही है।

कॉफी रखी हुई है डब्बे जमे हुए हैं।

एक वैन खड़ी है जिसका रंग सफेद है।

इस चित्र में हमें एक पाहाड़ दिख रहा है।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

इस चित्र में हमें पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

पत्ते दिख रहे हैं लाइटें दिखाई दे रही हैं।

फूलों की माला लगी है स्पीकर लगे हुए हैं।

पत्ते हरे रंग के हैं लकड़ी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें टोप एन टाउन आइसक्रीम दिखाई दे रहा है लोग खड़े हुए हैं लाइटें जल रही हैं।

इस चित्र में हमें एक लड़का दिख रहा है।

फूलों की माला दिख रही है ऑयल रखे हुए हैं कुछ औजार नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में पेट्रोल पंप दिख रहा है गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

हवन बनाए गए हैं लाइटे लगी हुई है।

एक औरत खड़ी है जिसने साड़ी पहनी है चिप्स के पैकेट दिखाई दे रहे हैं।

पाइप दिखाई दे रहा है पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें नर्सरी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

वाइपर दिख रहे हैं डब्बे नजर आ रहे हैं।

एक पुराना टनल दिख रहा है ताजुल मसाजिद दिख रही है गाड़ी नजर आ रही है।

ऊपर हरा पर्दा डला है आइसक्रीम की दुकान है।

इस चित्र में हमें एक पार्क दिख रहा है।